मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार आज मन की बात के एक और एपिसोड के जरिए हम एक साथ जुड़ रहे हैं
ये 2022 की पहली मन की बात है
आज हम फिर ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे देश और देशवासियों की सकारात्मक प्रेरणाओं और सामूहिक प्रयासों से जुड़ी होती है
आज हमारे पूज्य बापू महात्मा गाँधी जी की पुण्यतिथि भी है
30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है
अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतन्त्र दिवस भी मनाया
दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झाँकी देखी उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है
एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक यानि गाँधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा
इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है
इस बात का जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया देश के हर कोने से आनंद की जो लहर उठी हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाएँ प्रकट की उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं
साथियो आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनः प्रतिष्ठित कर रहा है
हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वार मेमोरियल पर प्रज्जवलित ज्योति को एक किया गया
इस भावुक अवसर पर कितने ही देशवासियों और शहीद परिवारों की आँखों में आँसू थे
नेशनल वार मेमोरियल में आज़ादी के बाद से शहीद हुए देश के सभी जाबांजों के नाम अंकित किए गए हैं
मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्जवलित हो रही अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है
सच में अमर जवान ज्योति की ही तरह हमारे शहीद उनकी प्रेरणा और उनके योगदान भी अमर हैं
मैं आप सभी से कहूँगा जब भी अवसर मिले नेशनल वार मेमोरियल जरुर जाएँ
अपने परिवार और बच्चों को भी जरुर ले जाएँ
यहाँ आपको एक अलग ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव होगा
साथियो अमृत महोत्सव के इन आयोजनों के बीच देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए
एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
ये पुरस्कार उन बच्चों को मिले जिन्होंने छोटीसी उम्र में साहसिक और प्रेरणादायी काम किए हैं
हम सबको अपने घरों में इन बच्चों के बारे में जरुर बताना चाहिए
इनसे हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और उनके भीतर देश का नाम रोशन करने का उत्साह जगेगा
देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है
पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं
ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं
जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है
बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जीया
कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी
यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया
उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है
इसी तरह मणिपुर की 77 साल की लौरेम्बम बीनो देवी दशकों से मणिपुर की लिबा टेक्सटाइल आर्ट का संरक्षण कर रही हैं
उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है
मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह को बैगा आदिवासी नृत्य की कला को पहचान दिलाने लिए पद्म सम्मान मिला है
पद्म सम्मान पाने वाले एक और व्यक्ति हैं श्रीमान् अमाई महालिंगा नाइक
ये एक किसान है और कर्नाटका के रहने वाले हैं
उन्हें कुछ लोग टनल मन भी कहते हैं
इन्होंने खेती में ऐसेऐसे इनोवेशन किए हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए
इनके प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हो रहा है
ऐसे और भी कई अनसंग हीरोज हैं जिन्हें देश ने उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है
आप जरुर इनके बारे में जानने की कोशिश करिए
इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा
मेरे प्यारे देशवासियो अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढ़ेरों पत्र और मेसेज भेजते हैं कई सुझाव भी देते हैं
इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है
मुझे एक करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्ट कार्ड के जरिए लिखकर भेजी है
ये एक करोड़ पोस्ट कार्ड देश के अलगअलग हिस्सों से आये हैं विदेश से भी आये हैं
समय निकालकर इनमें से काफी पोस्ट कार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है
इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है
मैंने मन की बात के श्रोताओं के लिए कुछ पोस्टकार्ड छांटे हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ
जैसे यह एक असम के गुवाहाटी से रिद्धिमा स्वर्गियारी का पोस्ट कार्ड है
रिद्धिमा क्लास 7th की स्टूडेंट हैं और उन्होंने लिखा है कि वो आज़ादी के 100वें साल में एक ऐसा भारत देखना चाहती हैं जो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश हो आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त हो शतप्रतिशत साक्षर देशों में शामिल हो ज़ेरो एक्सीडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तकनीक से फूड सिक्यूरिटी में सक्षम हो
रिद्धिमा हमारी बेटियाँ जो सोचती हैं जो सपने देश के लिए देखती हैं वो तो पूरे होते ही है
जब सबके प्रयास जुड़ेंगे आपकी युवापीढ़ी इसे लक्ष्य बनाकर काम करेगी तो आप भारत को जैसा बनाना चाहती है वैसे जरुर होगा
एक पोस्ट कार्ड मुझे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नव्या वर्मा का भी मिला है
नव्या ने लिखा है कि उनका सपना 2047 में ऐसे भारत का है जहाँ सभी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले जहाँ किसान समृद्ध हो और भ्रष्टाचार न हो
नव्या देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है
इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है
आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की
भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है
उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों ये काम हम सभी देशवासियों को आज की युवापीढ़ी को मिलकर करना है जल्द से जल्द करना है और इसके लिए बहुत जरुरी है कि हम कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें
जहाँ कर्तव्य निभाने का एहसास होता है
कर्तव्य सर्वोपरि होता है
वहाँ भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता
साथियो एक और पोस्टकार्ड मेरे सामने है चेन्नई से मोहम्मद इब्राहिम का
इब्राहिम 2047 में भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते हैं
वो चाहते हैं कि चंद्रमा पर भारत का अपना रिसर्च बसे हो और मंगल पर भारत मानव आबादी को बसाने का काम शुरू करे
साथ ही इब्राहिम पृथ्वी को भी प्रदूषण से मुक्त करने में भारत की बड़ी भूमिका देखते हैं
इब्राहिम जिस देश के पास आप जैसे नौजवान हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है
साथियो मेरे सामने एक और पत्र है
मध्य प्रदेश के रायसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 10th की छात्रा भावना का
सबसे पहले तो मैं भावना को कहूँगा कि आपने जिस तरह अपने पोस्टकार्ड को तिरंगे से सजाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा
भावना ने क्रांतिकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा है
साथियो मुझे गोवा से लॉरेन्शियो परेरा का पोस्टकार्ड भी मिला है
ये क्लास बारह 12th की स्टूडेंट है
इनके पत्र का भी विषय है आजादी के अनसंग हीरोज मैं इसका हिंदी भावार्थ आपको बता रहा हूं
इन्होंने लिखा है भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही सबसे बहादुर महिलाओं में से एक थी
उन्होंने बेटियों को सशक्त करने के लिए देशविदेश में बहुत से अभियान चलाए
अनेक प्रदर्शनियां लगाई
निश्चित तौर पर भीकाजी कामा स्वाधीनता आंदोलन की सबसे जांबांज महिलाओं में से एक थी
1907 में उन्होंने जर्मनी में तिरंगा फहराया था
इस तिरंगे को डिजाइन करने में जिस व्यक्ति ने उनका साथ दिया था वो थे श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा
श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का निधन 1930 में जेनेवा में हुआ था
उनकी अंतिम इच्छा थी कि भारत की आजादी के बाद उनकी अस्थियां भारत लायी जाए
वैसे तो 1947 में आजादी के दूसरे ही दिन उनकी अस्थियां भारत वापिस लानी चाहिए थीं लेकिन ये काम नहीं हुआ
शायद परमात्मा की इच्छा होगी ये काम मैं करूं और इस काम का सौभाग्य भी मुझे ही मिला
जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वर्ष 2003 में उनकी अस्थियां भारत लाई गईं थीं
श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की स्मृति में उनके जन्म स्थान कच्छ के मांडवी में एक स्मारक का निर्माण भी हुआ है
साथियो भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह केवल हमारे देश में ही नहीं है
मुझे भारत के मित्र देश क्रोएशिया से भी 75 पोस्टकार्ड मिले हैं
क्रोएशिया के ज़ाग्रेब में स्कूल ओएफ एप्लाइड आर्ट्स एंड डिजाइन के स्टूडेंट्स उन्होंने ये 75 कार्ड्स भारत के लोगों के लिए भेजे हैं और अमृत महोत्सव की बधाई दी है
मैं आप सभी देशवासियों की तरफ से क्रोएशिया और वहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो भारत शिक्षा और ज्ञान की तपोभूमि रहा है
हमने शिक्षा को किताबी ज्ञान तक तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इसे जीवन के एक समग्र अनुभव के तौर पर देखा है
हमारे देश की महान विभूतियों का भी शिक्षा से गहरा नाता रहा है
पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की वहीं महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ के निर्माण में अहम भूमिका निभाई
गुजरात के आणंद में एक बहुत प्यारी जगह है वल्लभ विद्यानगर
सरदार पटेल के आग्रह पर उनके दो सहयोगियों भाई काका और भीखा भाई ने वहां युवाओं के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की
इसी तरह पश्चिम बंगाल में गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर ने शान्ति निकेतन की स्थापना की
महाराजा गायकवाड़ भी शिक्षा के प्रबल समर्थकों में से एक थे
उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों का निर्माण करवाया और डॉ अम्बेकर और श्री ऑरोबिन्दो समेत अनके विभूतियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया
ऐसे ही महानुभावों की सूची में एक नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी है
राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना के लिए अपना घर ही सौंप दिया था
उन्होंने अलीगढ़ और मथुरा में शिक्षा केंद्रों के निर्माण के लिए खूब आर्थिक मदद की
कुछ समय पहले मुझे अलीगढ़ में उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ
मुझे खुशी है कि शिक्षा के प्रकाश को जनजन तक पहुंचाने की वही जीवंत भावना भारत में आज भी कायम है
क्या आपने जानते हैं कि इस भावना की सबसे सुन्दर बात क्या है वो ये है कि शिक्षा को लेकर ये जागरूकता समाज में हर स्तर पर दिख रही है
तमिलनाडु के त्रिप्पुर जिले के उदुमलपेट ब्लॉक में रहने वाली तायम्मल जी का उदाहरण तो बहुत ही प्रेरणादायी है
तायम्मल जी के पास अपनी कोई जमीन नहीं है
बरसों से इनका परिवार नारियल पानी बेचकर अपना गुजरबसर कर रहा है
आर्थिक स्थिति भले अच्छी ना हो लेकिन तायम्मल जी ने अपने बेटेबेटी को पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी
उनके बच्चे चिन्नवीरमपट्टी पंचायत यूनियन मिडल स्कूल में पढ़ते थे
ऐसे ही एक दिन स्कूल में अभिभावकों के साथ मीटिंग में ये बात उठी कि कक्षाओं और स्कूल की स्थिति को सुधारा जाए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए
तायम्मल जी भी उस मीटिंग में थे
उन्होंने सब कुछ सुना
इसी बैठक में फिर चर्चा इन कामों के लिए पैसे की कमी पर आकर टिक गई
इसके बाद तायम्मल जी ने जो किया उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था
जिन तायम्मल जी ने नारियल पानी बेचबेचकर कुछ पूंजी जमा की थी उन्होंने एक लाख रुपये स्कूल के लिए दान कर दिए
वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए सेवाभाव चाहिए
तायम्मल जी का कहना है अभी जो स्कूल है उसमें 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है
अब जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगा तो यहां हाइर सेकंडरी तक की पढ़ाई होने लगेगी
हमारे देश में शिक्षा को लेकर यह वही भावना है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था
मुझे ईआईटी भू के एक एल्यूमनस के इसी तरह के दान के बारे में भी पता चला है
भू के पूर्व छात्र जय चौधरी जी ने ईआईटी भू फाउंडेशन को एक मिलियन डॉलर यानि करीबकरीब साढ़े सात करोड़ रुपए डोनेट किये
साथियो हमारे देश में अलगअलग क्षेत्रों से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं
मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह के प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खासकर हमारी अलगअलग आईआईटीएस में निरंतर देखने को मिल रहे हैं
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के प्रेरक उदाहरणों की कमी नहीं है
इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए पिछले साल सितम्बर से देश में विद्यांजलि अभियान की भी शुरुआत हुई है
इसका उद्देश्य अलगअलग संगठनों सीएसआर और निजी क्षेत्र की भागीदारी से देशभर के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है
विद्यांजलि सामुदायिक भागीदारी और आउनरशिप की भावना को आगे बढ़ा रही है
अपने स्कूल कॉलेज से निरंतर जुड़े रहना अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान देना यह एक ऐसी बात है जिसका संतोष और आनंद अनुभव लेकर ही पता चलता है
मेरे प्यारे देशवासियो प्रकृति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा ये हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी है
हमारे इन्ही संस्कारों की झलक अभी हाल ही में तब दिखी जब मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया
इस बाघिन को लोग कॉलर वाली बाघिन कहते थे
वन विभाग ने इसे T15 नाम दिया था
इस बाघिन की मृत्यु ने लोगों को इतना भावुक कर दिया जैसे उनका कोई अपना दुनिया छोड़ गया हो
लोगों ने बाकायदा उसका अंतिम संस्कार किया उसे पूरे सम्मान और स्नेह के साथ विदाई दी
आपने भी ये तस्वीरें सोशल मीडिया में जरूर देखी होंगी
पूरी दुनिया में प्रकृति और जीवों के लिए हम भारतीयों के इस प्यार की खूब सराहना हुई
कॉलर वाली बाघिन ने जीवनकाल में 29 शावकों को जन्म दिया और 25 को पालपोसकर बड़ा भी बनाया
हमने T15 के इस जीवन को भी सेलिब्रेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे भावुक विदाई भी दी
यही तो भारत के लोगों की खूबी है
हम हर चेतन जीव से प्रेम का संबंध बना लेते हैं
ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला
इस परेड में presidentएस बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आख़िरी परेड में हिस्सा लिया
घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था
जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता था तब भी वो अपनी ये भूमिका निभाता था
इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख द्वारा सीओएस कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया
विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीक़े से उसे विदाई दी गई
मेरे प्यारे देशवासियो जब एक निष्ठ प्रयास होता है नेक नियत से काम होता है तो उसके परिणाम भी मिलते हैं
इसका एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया है असम से
असम का नाम लेते ही वहाँ के चायबागान और बहुत सारे नेशनल पार्क का ख्याल आता है
साथ ही एक सींग वाले गैंडे यानी ओने हॉर्न राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती है
आप सभी जानते हैं कि एक सींग वाला गैंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस्सा रहा है
भारत रत्न भूपेन हज़ारिका जी का ये गीत हर एक कान में गूँजता होगा

साथियो इस गीत का जो अर्थ है वो बहुत सुसंगत है
इस गीत में कहा गया है काजीरंगा का हराभरा परिवेश हाथी और बाघ का निवास एक सींग वाले गैंडे को पृथ्वी देखे पक्षियों का मधुर कलरव सुने
असम की विश्वप्रसिद्ध हथकरघा पर बुनी गई मूंगा और एरी की पोशाकों में भी गैंडो की आकृति दिखाई देती है
असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था
वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला था
इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले सात वर्षों में असम सरकार के विशेष प्रयासों से गैंडों के शिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया
पिछले 22 सितम्बर को वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किये गए 2400 से ज्यादा सींगों को जला दिया गया था
यह तस्करों के लिए एक सख्त सन्देश था
ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है
जहाँ 2013 में 37 गैंडे मारे गए थे वहीँ 2020 में 2 और 2021 में सिर्फ 1 गैंडे के शिकार का मामला सामने आया है
मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सरहाना करता हूँ
साथियो भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से दुनियाभर के लोगों को अपनी ओर खींचा है
अगर मैं आपसे कहूँ कि भारतीय संस्कृति अमेरिका कनाडा दुबई सिंगापुर पश्चिमी यूरोप और जापान में बहुत ही लोकप्रिय है तो यह बात आपको बहुत सामान्य लगेगी आपको कोई हैरानी नहीं होगी
लेकिन अगर ये कहूँ कि भारतीय संस्कृति का लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्षण है तो आप एक बार जरुर सोच में पड़ जायेंगे
मेक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर ब्राजिल में भारतीय परम्पराओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास मन की बात में हम इन विषयों पर पहले चर्चा कर चुके हैं
आज मैं आपको अर्जेंटिना में फहरा रहे भारतीय संस्कृति के परचम के बारे में बताऊंगा
अर्जेंटिना में हमारी संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है
2018 में मैंने अर्जेंटिना की अपनी यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम में योगा फोर पीस में हिस्सा लिया था
यहाँ अर्जेंटिना में एक संस्था है हस्तिनापुर फाउंडेशन
आपको सुनकर के आश्चर्य होता है न कहाँ अर्जेंटिना और वहाँ भी हस्तिनापुर फाउंडेशन
यह फाउंडेशन अर्जेंटिना में भारतीय वैदिक परम्पराओं के प्रसार में जुटा है
इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मदम प्रोफ़ेसर ऐडा एलब्रेक्ट ने की थी
आज प्रोफ़ेसर ऐडा एलब्रेक्ट 90 वर्ष की होने जा रही हैं
भारत के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ ये भी बहुत दिलचस्प है
जब वो 18 साल की थी तब पहली बार भारतीय संस्कृति की शक्ति से उनका परिचय हुआ
उन्होंने भारत में काफी समय भी बिताया
भगवद् गीता और उपनिषदों के बारे में गहराई से जाना
आज हस्तिनापुर फाउंडेशन के 40 हज़ार से अधिक सदस्य हैं और अर्जेंटिना एवं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में इसकी करीब 30 शाखाएं हैं
हस्तिनापुर फाउंडेशन ने स्पेनिश भाषा में 100 से अधिक वैदिक और दार्शनिक ग्रन्थ भी प्रकाशित किये हैं
इनका आश्रम भी बहुत मनमोहक है
आश्रम में 12 मंदिरों का निर्माण कराया गया है जिनमें अनके देवीदेवताओं की मूर्तियाँ हैं
इन सबके केंद्र में एक ऐसा मंदिर भी है जो अद्वैतवादी ध्यान के लिए बनाया गया है
साथियो ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण यह बताते हैं हमारी संस्कृति हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है
दुनिया भर के लोग उसे जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं जीना चाहते हैं
हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को खुद अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए सब लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो मैं अब आपसे और खासकर अपने युवाओं से एक प्रश्न करना चाहता हूँ
अब सोचिए आप एक बार में कितने पशअप्स कर सकते हैं
मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य से भर देगा
मणिपुर में 24 साल के युवा थौनाओजम निरंजॉय सिंह ने एक मिनट में 109 पशअप्स का रिकॉर्ड बनाया है
निरंजॉय सिंह के लिए रिकॉर्ड तोड़ना कोई बात नयी नहीं है इससे पहले भी उन्होंने एक मिनट में एक हाथ से सबसे ज्यादा नकल पशअप्स का रिकॉर्ड बनाया था
मुझे पूरा विश्वास है कि निरंजॉय सिंह से आप प्रेरित होंगे और फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनायेंगे
साथियो आज मैं आपके साथ लड़ख की एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूँ जिसके बारे में जानकर आपको जरुर गर्व होगा
लड़ख को जल्द ही एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है
यह स्टेडियम 10000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होने वाला है
लड़ख का यह सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहाँ 30000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे
लड़ख के इस आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम में 8 लाने वाला एक सिंथेटिक ट्रैक भी होगा
इसके अलावा यहाँ एक हज़ार बेद वाले एक होस्टेल की सुविधा भी होगी
आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि इस स्टेडियम को फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फिफा ने भी सर्टिफाई किया है
जब भी स्पोर्ट्स का ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो यह देश के युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आता है
साथसाथ जहाँ ये व्यवस्था होती है वहाँ भी देशभर के लोगों का आनाजाना होता है टूरिज्म को बढावा मिलता है और रोज़गार के अनेक अवसर पैदा होते हैं
स्टेडियम का भी लाभ लड़ख के हमारे अनेकों युवाओं को होगा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
एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है और वो है कोरोना का
कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीबकरीब साढ़े चार करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की दोसे ले ली है
इसका मतलब ये हुआ कि 15 से 18 साल की आयुवर्ग के लगभग 60 यूथ ने तीन से चार हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं
इससे न केवल हमारे युवाओं की रक्षा होगी बल्कि उन्हें पढाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी
एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही एक करोड़ लोगों ने प्रीकॉशन दोसे भी ले ली है
अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियोँ का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है
अब तो कोरोना संक्रमण के केस भी कम होने शुरू हुए हैं ये बहुत सकारात्मक संकेत है
लोग सुरक्षित रहें देश की आर्थिक गतिविधियों की रफ़्तार बनी रहे हर देशवासी की यही कामना है
और आप तो जानते ही हैं मन की बात में कुछ बातें मैं कहे बिना रह ही नहीं सकता हूँ जैसे स्वच्छता अभियान को हमें भूलना नहीं है सिंगल उसे प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को हमें और तेज़ी लानी जरुरी है वोकल फोर लोकल का मंत्र ये हमारी जिम्मेवारी है हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जीजान से जुटे रहना है
हम सबके प्रयास से ही देश विकास की नई ऊँचाइयों पर पहुँचेगा
इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ
बहुत बहुत धन्यवाद